बहुत सारे हथियार जिससे कार रिपेयर हो सके वो इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे है ।

ये एक स्विमिंग कूल का फोटो है स्विमिंग पूल में बहुत ही स्वच्छ पानी है नीले कलर का अच्छा सा--

रोड पूरा खाली है फिलहाल रोड में कोई भी साधन नहीं है एक बाइक और एक टेम्पो के अलावा --